एक व्यक्ति काली कलर की जेकिट पेहना हुआ है उपर टोपा लगा हुआ है कई सारे लोहे के उपकरण दिख रहे है लाइटे दिख रही है।

पानी बहोत ही गहरा है ब्रिज के ऊपर बहोत सारे लोग दिख रहे है नदी के किनारे भी बहोत सारे लोग दिख रहे है।

यह एक इवेंट आर्गेनाइजेशन की फोटो है यहाँ पर लड़कियों के द्वारा डांस किया जा रहा है।

एक नहीं बहोत सारी लड़कियां यहाँ पे डांस कर रही हैं लड़कियां रंग-बिरंगे कलर के कपड़े पेहनी हुई है।

बैकग्राउंड में पीछे कई मल्टी कलर के बैलून पर सजाए गए हैं ऊपर कुछ और भी दिख रहा--

यह एक भवन का चित्र है भवन तीन माला में दिख रही है भवन के बाहर हरे फलदार वृक्ष दिख रहे है उपर साइड --

यह चित्र एक पार्क का है यहाँ पार्क में बहोत सारे पेड़-पोधे लगे हुए है पार्क के बाहर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक-दो व्यक्ति भी दिख रहे है एक व्यक्ति पीले कलर का शर्ट पेहने हुए खडा है नीचे साइड बहोत कच्चे झोपडी वाले मकान दिख रहे है।

एक बड़ा सा पेड़ का वृक्ष दिख रहा है किनारे साइड एक मकान भी दिख रहा है यह पर एलोवीरा का भी पेड़ दिख रहा है एक बीच में लम्बा सा भी पेड़ दिख रहा है।

लोहे का पाइप में तिरंगा झंडा लगा हुआ है निचे साइड गोल-गोल पन झंडे को फसाने के लिए स्टेंड भी बनाया गया है।

यह चित्र एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का दिख रहा है इस बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है बाहर प्लास्टर कर दिया गया है और कुछ रेत के--

यह एक सुन्दर भवन दिख रहा है भवन दो कलर में लगा हुआ है एक भवन का कलर का लाल कलर का है एक साइड में एक का भवन कलर सफ़ेद कलर का है।

यह लड़का एक दुकान में खड़ा हुआ है दुकान के पीछे के बैकग्राउंड में अलमारीयो में कुछ सामान सजा हुआ है।

बच्चे के साथ एक बच्चा और चिपका हुआ है जो मुस्कुरा रहा है और ऊपर बहुत हरी भरी लाइट दिख रही है नीले कलर की भी लाइट दिख रही है पाउच भी लगे--

चारो साइड बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है कुछ पेड़ निचे गोल आकार में दिख रहे है फर्स में बहुत हरी-भरी घास बिछी हुई है।

घास के किनारे-किनारे एक पट्टीनुमा आकर बनाया गया है वहीं पर एक टिन का शेड भी लगा हुआ है बैठने की व्यवस्था भी--

जो कुछ सामान ले रहा है एक तराज़ू भी दिख रहा है ऊपर हल्की-हल्की सूरज की रौशनी पड़ रही है सीलिंग में--

सफ़ेद शर्ट पेहन कर और काली जीन्स पेहन कर जूता पेहन कर दुकान के अंदर--

आकृति के चारो और लोहे के रेलिंग लगी हुई है उसमें सफ़ेद कलर का पेंट पुता हुआ है ऊपर गुलाबी कलर का पेंट पुता हुआ है।

पीछे बैकग्राउंड में व्यक्ति के बहोत सारी बूकें रखी हुई है जो वह बुक को देख कर कुछ काम कर रहा है हाथ से कुछ रखा--

गुफा के अन्दर घुस कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है व गुफा के अन्दर जाना चाहता है व्यक्ति के द्वारा चश्मा भी लगाया गया है निचे सफ़ेद कलर की मिट्टी--

चार से पाच लड़के बेठे हुई हैं एक लड़का पिली शर्ट पहना हुआ है एक लड़का लाल शर्ट पहना हुआ है एक लड़का ओरेंज शर्ट पहना हुआ है।

वाला पत्थर में हाथ टिकाये बेठा हुआ है चारो साइड पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं किनारे-किनारे हरे हरे पेड़ पोधे दिख रहे--

यह चित्र एक प्लेग्राउंड का है यहां बच्चे गोल गोल आकार में उसी के अंदर बैठकर कुछ खेल रहे हैं।

एक बच्चा गोल-गोल आकृति की देख कर आगे बढ़ रहा है दूसरा ब-बच्चा पीछे एक-दूसरे का हाथ--

यह एक सैलून की फोटो है एक लड़के के द्वारा सीट में बैठ कर सैलून में अपनी दाढ़ी बनवाई जा रही है दूसरे--

और किनारे-किनारे मि-मिरर में कुछ दिख रहा है चारो साइड बैकग्राउंड में पर्दे लगे--

यहाँ पर बैठने के लिए उपर शेड भी लगाया गया है नीचे टेबल भी लगी हुई है जमीन में हरी-हरी घसे दिख रही हैं।

बेड के सामने पंखा भी लगा हुआ है टीवी लगी हुई है बाहर साइड से एल्मोनियम ग्लास से पूरी सूर्य की रोशनी आ रही है।

व्यक्ती नीले कलर का कपडा पहना हुआ है चारों साइड टेबल में सफ़ेद कलर का पेंट पुता हुआ है फर्श में टाइल्स लगी हुई है सीलिंग सफ़ेद कलर --

मैं उसको खाना सर्व कर रहा है। ऊपर साइड काले काले धब्बे दिख रहे हैं चारों साइड आदमी भी दिख रहे हैं जो कुछ ले रहे हैं।

ऊपर के आसमान की परछाई नीचे पानी में दिख रही है चारो साइड बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है और पहाड़--

यह फोटो में कोई एक इवेंट पार्टी चल रही है इस इवेंट पार्टी में बहुत सारे लोग बेठे हुए हैं किनारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक पार्किंग को दर्शाया गया है यह बहोत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर कई प्रकार की मल्टी गाड़िया खड़ी हुई है।

यह चित्र किसी कार्टून का दिख रहा है कार्टून में बंदर दिख रहा है बंदर के ऊपर तम्बू में टेंट लगाया गया है।

अगल बगल कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं लाल पिली कुछ स्कूटर दिख रही है बच्चे ने पैर में जूता पहने हुए है बच्चा बन्दर को गुर निहार रहा है।

यह दुकान जेसा घर की फोटो दिख रही है यहाँ पर बच्चे भी खड़े हैं एक एक महिला भी खड़ी है अन्दर एक व्यक्ति फोटो खीच रहा है।

अन्दर कुछ खाने के समान भी रखे हुए है बच्चो के द्वारा आँख भी बंद किया गया है हाथ भी जोड़ा गया है एक महिला ने अपने चारो साइड दुप--